लगाया हुआ है हिआँ पे वाह के चारो और एकदम हरा भरा हरियाली है एकदम चारो और एकदम हरियाली छाई हुई है एकदम।

जो की सैलून में अपने बाल ट्रेडिशनल या गया वहाँ पे कटिंग करा के स्टायलिश एकदम कटिंग कर करवाने के लिए यहाँ पे आती है और ये सैलून का सीन लग रहा है यहाँ पे।

यहाँ डेकोरेशन एकदम शीशे की तरह सजा है। आर पार देखने वाला शीशा भी लगा है और यहाँ पे लग रहा है। टेबल भी साफ सुथरे रखे हुए हैं यहाँ पे।